पीछे रेड कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

और सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

और दो से तीन लोग यहां दिख रहे हैं।

छोटे छोटे पेड़ ग्रीन कलर की पत्तियां सामने कुछ रेत पड़ी हुई है।

यह एक दुकान है पीछे की ओर हमें कुछ लकड़ी--

यहां पर एक बेड दिख रहा है।

सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा दुकान के अंदर।

साथ में ही कुछ परदे दिख रहे हैं।

ग्राउंड में हमें फ्लोर का कलर --

यहां पर हमें दिख रहा है --

एक व्यक्ति सामने ही एक कार दिख रही है।

जंगल के बीच में दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

साथ में एक केक दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर--

जो कि यहां पर हमें दिख रहा है येलो कलर का।

येलो ओर ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ घास दिखाई दे रही हैं सुखी सुखी।

सामने एक सोफा रखा गया है।

यहां हमें योगा करते हुए बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है।

जिसमें की कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।